यह एक पहाड़ी नुमा क्षेत्र का फोटो है जिसमें पहाड़ के ऊपर बहुत सारा घर बना हुआ है और उधर पहाड़ हीं पहाड़ है जंगल भी है।